और एक साइड अ पेट्रोल पंप भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

अह घर की पिक्चर है जो कि उसके अंदर की है और तीन कमरे अंदर बने हुए हैं ऊपर नीचे टाइल लगी हुई है और ऊपर--

टैल लगे हुए है और ए_सी लगा हुआ है पास में कप है एक बेडरूम है बैठकर--